बहुत बड़ी मूर्ति है मूर्ति के ऊपर एक चादर है मूर्ति हाथ में पाली हुई है।

सामने पानी भरा हुआ हैजो बहुत गंदा हैउसे गंदे पानी में दरियाई घोड़ा है।

और बहुत सारे वाहन रखे हुए हैं। उस वाहन के पास बहुत सारी कुर्सियां रखी हैं जो नहीं है। और सभी वहांन नए हैं।

एक दोकान है जिसमें बोहत बड़े बाड़े कांच लगे हुए है। और दरवाजा खूला हूआ है।

एरोप्लेन की पास बोहत सारे बच्चे है जिनमे से कुछ बच्चे बैग टंगे हुए है और कुछ बिना बैग के है।

सामने बहुत सारी मूर्तियां हैं दो नीचे की ओर है। और दो ऊपर की ओर है।

मैदान के सामने बहुत सारे बिल्डिंगे बनी है जिनमें बहुत सारी खिड़कियां हैंऔर बालकनी है।

और सिंड़ीया है मूर्ति के पास तिरंगा लहरा रा--